जैसे कि हमको चित्र में दिख रहा है कि यह एक हाल्ट है और हाल्ट पअ पटरी है।

जैसे कि हमको चित्र में दिख रहा है कि यह एक साहित्य संगीत का मंच है।

यहां एक होटल है होटल पर कुछ लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं।